जिसके पीछे कर्टेन लगे हुए हैं।

और सामने मुझे मशीन दिख रही है दो जो कि व्हाइट और स्काई ब्लू कलर की है।

और इस पे बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और सामने मुझे सामान दिख रहे हैं बहुत सारे और उनके पास बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं और यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे है।

आमने मुझे गेट दिख रहा है।

सामने मुझे बच्चे दिख रहे हैं।

और पीछे स्कूल बस खड़ी हुई है।

मुझे बलूंस लगे हुए दिख रहे हैं रेड येलो और ब्लू कलर के और वाइट कलर के।

और उसके बगल में तीन चार कारे खड़ी हुई है।

हमारे सामने कांच के गेट्स लगे हुए हैं।

और उसके बाद फिर उन्होंने रेड कलर का कपड़ा पहना हुआ है और एक शर्ट और एक पैंट है।

और साइड में कर्टन है।

पानी का कलर ग्रीन कलर का है।

ग्रे कलर की और उसने ब्लैक कलर की टोपी लगाई हुई है।

सामने मुझे एक ए_टी_एम दिख रहा है।